इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है की एक घोड़ा पानी पी रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है।

अपना कमरे बना रे ह न कोठीया बना रे ह न।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा तालाब पानी से बहुत ही सुन्दर और बड़ा हुआ है।

ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि--

होते हन और नमकीन होते हन जो की घर पर बनाए जाते हन और अच्छे भी होते हन ।

और कुछ आस पास बहोत

जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना।

बहोत ही सुंदर और शानदार नजारा हैं।

ये एक तस्वीर दिखा रही है इस तस्वीर मे--

आदि चोखा खा रहे हैं अरे कुछ कर रहे हैं न क्योंकि बहुत ही सुंदर नजारा दिखा रहे--